और एक लड़का यहाँ पर खड़ा होके--

एक बहोत बड़ा शीप है दोनों जगह में--

पहाड़ है पहाड़ के ऊपर पेड़ है।

जो दूर - दूर तक भी नजर नहीं पहुँच पा रहा हैं इतना बडा सुंदर सा --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ ये एक सुन्दर सुबह का समय है।

सामने बड़ा सा फल का दुकान है।

इसे देख पा रही हु सुन्दर शाम का समय है और यहाँ पे बहोत सारा मछली का दुकान है और मछली यहाँ पर बहोत रकम का मछली है चिंगरी --